यह बाइक रिपेयरिंग का दुकान है जो कि बहुत छोटा सा है और स्टार्टअप अभी-अभी ही हुआ है।

उसका नाम है बिहार मोटर साइकिल रिपेयरिंग सेंटर एंड स्पेयर पर्ट्स पुरानी मोतीहारी रोड बेरियाँ मे स्तिथ है ।

यह एक लड़का है जोकि --

यह एक ड्राई क्लीनर का दुकान है जिसका नाम ब्राइट लाइन ड्राई क्लीनरस है इसमे --

यह फोटो में देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स भी है जो कि देखने से लग रहा है की ये --

एक स्टेडियम है जो कि उसमें बहुत सारे बच्चें बैठे हुए दिख रहे हैं इसमें खेलते भी होंगे ।

जो कि फर्स्ट फ्लोर पे स्थित है और यहाँ पे एक लॉन --

बस है जो मुजफ्फरपुर के स्तिथ मुना सुखला का बस है और यहाँ पे एक पेस्पसी का भी बोर्ड नीचे में लगा हुआ हैं।